इस फोटो में एक सुंदर सा तालाब दिखाया गया है।

तालाब के किनारे एक छोटा सा घर हैं।

और दूसरी तरफ साई बाबा का फोटो लगा हुआ है।

इस फोटो में एक रूम है जहां पर कुछ औरतें योगा कर रहे हैं।

साइड में एक दुकान का शटर भी दिखाया गया है।

दुकान के बाहर दो लोग बैठे हुए हैं उनमें से एक लोग मोबाइल देख रहा है।

ए पानी देखने में बहोत ही साफ सुथरा दिखता है।

खाने पीने का सामान दिखाया जा रहा है।

यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इस दुकान पे चावल की बस्ते दिखाए जा रहे है।

दुकान के अंदर किताबें भी दिख रही है।

इनमें से तीन ने हमारे देश के जवानों का कपड़ा पहना हुआ है और एक लड़की परी का ड्रेस पहनी हुई है।

चारों तरफ वातावरण बहोत ही अच्छा है।

रेस्टोरेंट के बाहर भी एक टेबल लगी है।

साइड में एक ताजमहल का पोस्टर लगा हुआ है।

कंकाल के पीछे एक खिड़की है।

बाहर पर छोटे छोटे घर दिखाए जा रहे हैं।

नीचे फ्लोर में कार्पेट बिछाया गया है।